ये एक मकान है जिस पर बोर्ड लगा है। लिखा है भारतीय स्टेट बैंक चंपा चम चामरा जंगल ज नगर है।

बहुत बड़ा पोखर है नदी जैसा दिख रहा है। इसमें दूर-दूर तक सिर्फ आसमान दिख रहा है इधर घास भी है बहुत सुंदर लग रहा है गहराई लग रहा है बहुत सारा पानी है इसमें।

पाया है इसमें ट्रक लगा हुआ हैं।

बैलून है इसमें लेडिस है जेंट्स है एक तरफ।

दरवाजा भी है एक आदमी पेंट कर रहा है।